कैर्रोम बोर्ड खेल रहे हैं सभी प्रकार यहाँ पर गोटी यहाँ पर रखे गए हैं ।

ये कॉलेज मे बहुत सारे मास्टर भी रहते है ये कॉलेज मे इंटर बी.ए. के भी बच्चे पढने के लिए आते है।

यह कॉलेज के बाहर चार चक्के की गाड़ी लगी है एवं बहुत सारे बाइक भी लगे हुए हैं।